यह एक दुकान है इस दुकान में सभी लोग नाई का काम करते हैं और यहां पर सभी लोग बाल को कटवाने के लिए आते है बाल बहुत ही कटिंग से काटती है इसलिए सभी लोग यहां पे बाल कटवाने के लिए आते हैं और सभी लोग यह चाहते हैं की मेरे बाल बहुत ही अच्छी तरह से कट जाए।